यहाँ एक लड़की योगा कर-कर दिखा रही हैं जिसके पीछे काले-काले पर्दे लगे हुए हैं और यहाँ इस स्टारस लगी हुई लाइट नज़र आ रही हैं या--

यह शादी समारोह का तैयारी हैं यहाँ फूल लगाए गए हैं यहाँ एक बहोत ही सुंदर सोफा नज़र आ रहा हैं।

और यहाँ सामने कैमरा रखा गया हैं यहाँ लाइट्स भी हैं यहाँ काफी सूंदर जगह हैं इसके नीचे दरी बिछाई गई हैं और इस मे लाइट्स भी लगाए गए हैं।

यह एक हरा-भरा मैदान है यहां थोड़ थोड़ी सी जगह पर पानी बह रहा है और यहां पत्थर यहां पत्थर भी है यहां सामने बहुत सारे पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।

--और नीला आसमान है बहुत दूर-दूर तक यहाँ पेड़-पौधे हैं यह एक समुन्द्र है।